इस चित्र में कोई --

अन्दर शादी समारोह लग रहा है। लोग बैठे हुए हैं। कुर्सियां लगी हैं।

सफ़ेद आसमान दिख रहा है और --

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है जिसपे अपना बाज़ार का बोर्ड लगा हुआ है।

चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि दिख रहा है। नीला बोर्ड लगा है। बाहर गाड़ियां खड़ी हैं।

मुझे दरवाजे दिख रहे हैं।

सभी लोग सुन रहे हैं।

और पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे और लोग खड़े हुए हैं।